काफी सारा फैन लगे हुए है। एक आदमी भी बैठे हुए है।

यहाँ से लोग ले जाने के लिए आते है बहुत ही --

फोटो खींचा रहे हैं चश्मा भी पहने हैं इसके बगल में --

बहुत बड़ा दुकान है बहुत ही लोग आते होंगे कपड़े लेने के लिए बहुत ही सुंदर-सुंदर कपड़े बिकते हैं।